इस पिक में अ ऊपर से जो रेड कलर का पेंट पुता हुआ है और प्लस का निशान वाइट कलर का दिख रहा है और --

और जिसकी कुछ बोर्डरे हैं जो चॉकलेटी कलर के कलर से पेंट हैं और एक गेट लगा हुआ--

इस चित्र मे सीधा रोड दिख रहा है और इस पास मे एक घर दिख रहा है और यहाँ पे कुछ गार्डन अ जो--

कुछ हरे दिख रहे है और कुछ ब्लैक एंड वाइट घास दिख रही है और पीछे एक घर दिख रहा --

और एक सीडी लगी हुई है पत्थरों के पास में और ऊपर आसमान दिख रहा जो ब्यूटीफुल लग रहा है|

वृक्ष लगा हुआ है और ऊपर आसमान दिख रहा है।

इस चित्र में एक बोहोत पूरा आई मीन अ अ खण्डर सा लग रहा है और जो शोकेस में देखने में बहुत सुन्दर दिख रहा है।

इस पिक्चर में अ खंबे लगे हुआ हैंजो बिजली के है और लोहे के दिख रहें है और यहाँ से अ अभी रोड न्यू बना हुआ है जो --

इस चित्र में सामने बहुत सारी घास खड़ी हुई है वो हरी दिख रही है और यहाँ कुछ पेड़े --

इस चित्र मे एक मेंन गेट दिख रहा हैं और उसके अंदर कुछ पुराना सा खंडर दिख रहा हैं ।